एक बोर्ड लगा हुआ है जो सफ़ेद रंग का है उसके बा-- बाजू में एक कैलेंडर लटका हुआ है दीवार का रंग सफ़ेद है और छत का रंग भी सफ़ेद है

और चर्च की जो दीवारे है वो लाल रंग की है जिसपे क्रॉस का साइन बना हुआ है।

जिसपे कॉलेज लिखा हुआ है। बाहर सीढियाँ है जो गुलाबीक रंग में है और उसके बाहर जो ज़मीन है--

उसके पीछे एक देवी का मंदिर है।

सामने एक ऑफिस है जिसका गेट खुला हुआ है।